और ये कुछ रखा हुआ है इसको प्लास्टिक से ढका गया है बगल से स सड़क गया है कच्ची सड़क है |

सभी बच्चे अपने-अपने काम में लीन हैं सब बना रहे हैं ड्राइंग का सब पेपर रखा हुआ हैं सभी बच्चे ड्रेस पहने हुए हैं कुछ बच्चे खड़े हो के बना रहे है कुछ बैठे हुए है बाहर से रौशनी आ रहा है गैलरी में बैठा हुआ हैं बहोत सुंदर देख रहा है अच्छा लग रहा है ।

देख रहे हैं की एक आदमी अपने हाथ में लिए हुए हैं कपड़ा और ड्राई क्लीन करा के जा रहे हैं बगल में एक आदमी है हेलमेट पहने हुए है जैकेट पहने हुए हैं जींस पहने हुए हैं अपना कपड़ा निकलवा रहे हैं हो सकता है कपड़ा दे रहे हो यहां पर कपड़ा को नए तरीके से बना कर दिया जाता है।